की यहां पर हमें बस स्टैंड पर लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं और उनके सामने ही यहां पर--